टोटो बाजारों मे ज्यादा दिखाई देती है।

और बोहोत भींड लगी रेहती है यहां एक टोटो खडी है।

बस स्टॉप है बस स्टॉप पे बोहोत सारी बसे खडी है|

यह एक स्कूल है इस स्कूल में बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं।

फूल बना गया दिखाई दे रहा है ।

छड़ को बांध रहे है बहुत मेहनत --

इस महजिद में दो चोंगे लगाये गये है।

टर भी है यहाँ पे सिलाई की--

और बहुत सारी ऑटो चल रही --

बहुत सारे आदमी मिल के खाना बना रहे है।

और बहुत सारी दुकाने है यहाँ पे--